यहाँ परररर इंसान दिखाई दे रहा है और एक मोबाइल भी दिखाई दे रहा है और बहुत सारे परफ्यूम भी दिखाई दे रहे और यहाँ पर ममम कांच भी दिखाई दे रहा है और यहाँ पर बडेम-बो सैनिटाइजर भी दिखाई दे रहा --

--पर पोस्टर दिखाई दे रहे है यहाँ पर बोतल भी दिखाई दे रहे है पर तुलसी भी दिखाई दे रही है बहुत सारी समान भी दिखाई दे रहा ---